व्हाइट कलर के पेहने हुए है आपस में बात कर रहे है एक दूसरे से।

मैट बिछा हुआ है और साथ में--

ग्रीन कलर की बेल लगाई हुई है आसपास--

ऑटो रिक्शा की चाबी पकड़ा रहा है एक पर्सन एक लेडीस को।

बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं लड़ियां लगाई हुई हैं लाइटिंग की शॉप पर--

तीन चार मजदूर लगे हुए हैं एक किसान लगे हुए हैं आसपास पेड़ हैं एक मकानसा नजर आ रहा हैं।

सब तोड़ रहे हैं उसमें बीज रहे हैं बीज बो रहे हैं

हैंड वाश कई तरह की आइटमस लगी हुई हैं।

जंगल घर से बने हुए पिक्चर्स वहां पर बहुत सारे हिरन है।

पीछे बहोत दूर तक हरे भरे पेड़ हैं।

पे जा पॅन्ट में और हाफ शर्ट पहनी हुई हैं डॅप कॅप डाली हुई हैं उसके पास ही बाइक खड़ी हैं।

रेड कलर की पोस्टर बने हुए हैं।

फ्लॉर भी व्हाइट कलर की है। डोर लगा हुआ है उसपे भी व्हाइट कलर है थोड़ा सा ओपन हैं और पिक्चर्स लगी हुई हैं वॉल पे पेपर्स की।

ब्लैक कलर में है गोल्डन कलर है ब्लैक एंड व्हाइट है।

रिसॉर्ट है पेन्स रिसॉर्ट लिखा हुआ हैं।

स्कूटर पे बाइक चला रहा एक पर्सन के साथ में गाड़ी खड़ी है।

कृष्णा मेडिकल कोर्स लिखा हुआ है लाइट जल रही है ग्रीन कलर की।

बैंच पर बैठे हुए लोग कई खड़े हुए हैं और उसके सब लोग बैंच लगा हुआ है ब्लू कलर का

टायर का शॉप है टायर लगे हुए हैं अलग अलग टाइप के छोटे बड़े फिर छोटे--

नदी है नदी में लोग बोटिंग कर रहे हैं दो दो।

कैपिटल टाइप की शॉप है वहां पर--